यह एक गुरमान एग्रो --

येहे एक मेन रोड की तस्वीर है।

यह एक मिस्त्रिया दी--

कुर्सियां पड़ी हुई हैं और लाइटों में--